जैसे कि इस पिक्चर में मैं देख पा रहा हूं यहां पे छोटे-छोटे बहुत ही सुंदर तरह की पेंटिंग सजे हुए यहां पे कप है और कप के पूरे पूरे सेट है यहां पे।

नाम करके एक ये इंस्टिट्यूट है योगा का और लाल की कार इसके बाहर खड़ी हुई है पेड़-पौधे यहां पे अच्छे हैं।

यहां पे इसको बोत अच्छी तरीके से सजाया गया है पेड़-पौधों से और यहां पे हरी पत्तियों से सजाया गया है।

बैठने के लिए एक कुर्सी दी गई है जिसको संतरी कलर से पेंट किया गया है और यहां पे एक बहुत अच्छा दृश्य है ।

और यहां पे एक कुछ समारोह हो रहा है और यहां पे पार्टी चल रही है और काफी सारे समूह में यहां पे लोग--

खड़े हुए हैं पेड़-पौधे यहां पर है लाइट लगी हुई है पीली कलर की लाइट यहां पे शाम का दृश्य है ये और काफी सारी लाइट यहां पे लगी हुई है ।

लाइटों से सजा के बनाया हुआ है और यहां पे काफी सारे मंजिलें बनी हुई हैं और यहां पे काफी सारी लाइट लगी हुई है पेड़-पौधे लगे हुए हैं सजाने के लिए--

जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहा हूं यहां पे एक एक कार आते हुए दिख रही है और यहां पे एक प्लेन फर्श है चिकना फर्श है यहां पे और बड़े-बड़े पेड़ पौधे यहां पे खड़े हुए हैं।

जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहा हूं एक दूध की दुकान है दूध की डेरी है यहां पे फुल क्रीम दूध का ये सब तरह तरह के दूध यहां पे मिलते हैं ब्रेड वगैरा मक्खन सब मिलता है यहां पे--

जैसे कि इस पिक्चर में मैं देख पा रहा हूं यहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड नजर आता दिख रहा है और यहां पे बड़े से पेड़ यहां पे खड़ा हुआ है और --

और डाल कर के यहां पे पत्थर से यहां पे जमीन बनी हुई है और खुदरा-खुदरा भी हो रखा है।

जैसे कि इस पिक्चर में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक बहोत बड़ा सा मैदान है और यहाँ पे चिकना फर्स है और एक ये यहाँ एक स्कूल का --

जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहा हूं ये एक बहोत बड़ी सी लंबी सी लाइन लगी हुई है मंदिर के सामने और मंदिर के दर्शन करने भगवान के अपने-अपने श्रद्धा के हिसाब से दर्शन करने के लिए --